आदित्य डेरी भी दिख रहा है अजंता डेरी --

लाइट दिखाई दे रही है आदमी दिखाई दे रहे हैं बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे भी लाइट लग रही है इसके--

ये लाल लाल गेट है गाडी खड़ी है बाइक भी है।

ये वो एक मा चानचाला ड्राई फ्रूट्स है जो --